इंजॉय करते हैं ये बहुत ही भव्य मंदिर है लोग बहुत दूर-दूर से इस मंदिर में पूजा करने आते हैं और पूजा करते हैं इसलिए जो है इस मंदिर को जो है माना जाता है बहुत ही अच्छा मन --